बहुत सारा पेर दिखाई पड़ रहा है ग्रीन और येलो कलर मे दिखाई दे रहा है।

बादल दिखाई पर सफेद कलर में और मौसम जो ब्लू कलर का है।

फैन है जो सफेद रेड कलर का है।

लड़का दिखाई दिए गए जो ब्लू कलर का कपड़ा पहना हुआ है और पिंक कलर का जींस पहना हुआ है।

आसमान सफेद कलर का है।

बहुत सारा कलर पेपर दिखाई पड़ रहा है जो ब्रिंजल येलो और ब्ल्यू कलर से बनाया हुआ है।

यहां में एक घर दिखाई पड़ रहा है जो सफेद कलर से बनाया गया है।

बहुत सारा बुक दिखाई पड़ रहा है जो व्हाइट येलो ब्लैक कलर का है।

अंदर में फ्लावर दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का।

यह ब्लू लड़का है जो ब्लू व्हाइट ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

रिक्शा दिखाई पड़ रहा है ब्लैक और एलो कलर से बनाया हुआ है।

बहुत सारा पे भी दिखाई पड़ रहा हैं।

गेट दिखाई पड़ रहा है जो ब्लैक कलर का है जो लोहा से बनाया गया है।

यहां में बहुत सारा गास दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है।

कर रहे हैं सफेद कलर का।

बहुत सारा लाइट दिखाई पड़ रहा है और एक फेन दिखाई पड़ रहा है सफेद कलर का।

भी दिखाई पड़ रहा ब्लैक कलर का।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

एक बोतल भी दिखाइ पर रहा है जो कि ग्रे और ब्लू कलर का है।

बहुत सारा चेयर भी दिखाई पर रहा है ब्लू कलर का।

सारा आदमी दिखाई पड़ रहा है सफेद काला और रेड कलर का पहना हुआ है।

एक पोल दिखाई पर रहा है ब्राउन कलर का।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

ब्राउन कलर का टेबल दिखाई पड़ रहा है जो लकड़ी से बनाया हुआ है।